ए_टी_एम से पैसा नि जा के निकलते हैं ए_टी_एम पकड़ के जाते है ए_टी_एम निकल के जिस से पैसा बहुत जल्दी निकल ज--

बहुत ही सुन्दर फोटो दिख रहा है ये जितना तारीफ करो उतना ही कम है बहुत ही सुन्दर यहाँ पे ठेला वेला यहाँ पे लगा हुआ है गाड़ी सब खड़ा हुआ है।